मुझे एक खेत दिखाई दे रहा है खेत मे मिट्टी दिखाई दे रही है मिट्टी के ऊपर हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं पत्ते के अंदर पत्ता गोबी दिख के छोटे छोटे से बड़े बड़े से फूल दिखाई दे रहे हैं।